रेस्टोरेंट कुछ अंदर कांच की भी लगी हैं बहुत सारी बल्ब लगी हुई हैं कुछ मार्शलें भी रखी हुई हैं।

तीन चार चार कुर्सियाँ रखी हुई हैं एक बच्चा बैठा हुआ है।

प्राईज चार्ज भी लिखा हुआ है दो गेट दिख रहे हैं एक खिड़की लगी हुई हैं।

टंगी हुई है बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं एक मर्द बैठा हुआ है।

एक बोलरा भी है बहुत पत्थर बंधी हुई है।

स्टैंड दिख रहा है उसमें कुछ बस खड़ी हुई है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

नाम स्टेशन निवार ल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक मुझे बड़ा सा खाई दिखाई दे रही है। बहोत सी झाड़ियां दिखाई दे री है।

शॉपिंग दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

एक बोतल दिखाई दे रही है।

कुछ कांच के खिड़की दिखाई दे रहे है कुछ नीचे टाइल्स नजर आ रहा है।

के वहां पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक दिखाई दे रहा है उसमें कुछ--

कुशल वाली जाली लगी दिखाई दे रही है कुछ छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे हैं।